वो कुछ बेंच है और यहां पर कुछ कागज का सामान रखा हुआ है इनके आगे।

इस तस्वीर में एक खेत है और उसमें ढेर सारा घास खड़ा हुआ है।

मूर्ति भी है और यहां पर बहुत सारे लोग हैं।

बजरी भी है और रेता भी है।

तस्वीर में बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

और बराबर साइड में गमले रखे हुए हैं।

और कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

और एक गेट है और कुछ खिड़कियां हैं।

और कचरे के डिब्बे रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारे गत्ते के डिब्बे रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक लड़की है और पानी भी है।

कोई बराबर साइड में शीशे भी लगे हुए हैं।

इसमें बहोत सारे चिड़िया बल्ले टंगे हुए हैं।